जहां पर बहुत सारे किताब कॉपी रखी हुई हैं ।

और कुछ बैलूंस भी लगाए गए हैं।

और कुछ येलो लाइट्स भी जल रही हैं।

और एक फोन पे का --

क्यू_आर भी दिखाई पड़ रहा है।

जिसमें एक कचरा उठाने वाली गाड़ी भी है।

दिन का समय है और मौसम भी साफ है।

औरयहाँ पर पिलर भी लगाए गए हैं।

और कुछ शख्स बातें करते दिखाईपड़ रहे हैं ।

जहां पर बहुत सारे प्रोटीन रखे गए हैं ।

और कुछ प्रोटीन के नाम इस प्रकार हैं।

यह एक पार्क है जहां पर बहुत सारे घास जमे हुए हैं ।

और कुछ इनकी जालियां भी रखी गई हैं ।

यहाँ पर लाइट्स भी लगाई गई हैं ।

यह एक पार्क है जहां पर बहुत सारे पेड़-पौधे भी लगाए गए हैं।

दिन का समय है यहां पर बहुत सारे पेड़-पौधे भी दिख रहे हैं।

यह एक जिम है जहां पर कुछ शख्स दिखाई पड़ रहे हैं।

यह यह एक नदी का नजारा है जहाँ पर कुछ बोट्स भी दिख रही हैं।

यहाँ बहुत सारे पिलर्स भी लगाए गए हैं।

यह एक बंद पड़ी हुई दुकान है।

और एक शख्स आईने की तरफ लाइट करके खड़ा है।

जिसके ऊपर बोर्ड भी लगाया गया है।

कुछ पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं।

और कुछ टेबल और कुर्सी भी लगाए गए हैं।

और यहाँ बहुत सारे पिलर भी हैं।

मौसम बिल्कुल साफ़ है यहां बहुत सारे पेड़-पौधे भी नजर आ रहे हैं ।

मौसम बिल्कुल साफ है ।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

अंदर की ओर एक शख्स किताबें पढ़ रहा है।

और इसमें पेन को किताब कॉपी भी बिक रही है ।

यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते दिखाई दे रहे हैं ।

और कुछ टीचर्स भी दिखाई दे रही हैं ।

बहुत सारे पेड़-पौधे भी नजर आ रहे हैं।

मौसम बिल्कुल साफ दिख रहा है।

जिस पर शीशे रखे हुए हैं ।

और कुछ गाड़ियां भी दिखाई पड़ रही हैं।

जहां पर कुछ महिलाएं शॉपिंग करते हुए दिखे जा सकती हैं।

एक शख्स उन्हें चुड़ियां बेच रहा है।

और इसके नीचे एक चाय की टपड़ी है जो अभी बंद है ।

उसके बगल में एक किराने की दुकान है ।

यह एक पंडितों का समूह है ।

और मौसम बिल्कुल साफ है।

जहां पर बहुत स अच्छा डेकोरेशन किया गया है ।

यहाँ पर ढेर सारे लाइट भी लगाए गए हैं।

इसके ऊपर एक झूमर भी लगाया गया है ।

एक आदमी अपने हाथ को आगे की ओर कर खा रा है।

यह एक बहुत सुंदर महल है।

जिसमें कुछ व्यक्ति खड़े दिखाई पड़ रहे हैं।

यहाँ पर दो दो तला मकान है।

और पानी बिल्कुल साफ है।

मौसम बिल्कुल अच्छा है आगे की ओर कुछ पहाड़ भी नजर आ रहे हैं।

यह एक जिम है जहां पर कुछ व्यक्ति जिम करते हुए नजर आ रहे हैं।

यहाँ पर बहुत सारी साइकिलें भी हैं।

यह एक बस है जो गवर्नमेंट वर्क के लिए है।

यहाँ पर एक शख्स खड़ा नजर आ रहा है।

यह एक अनाथालय है जहाँ पर एक वॉर्डन --

मौसम बिल्कुल साफ है।

व्यक्ति झूले पर बैठे देखे जा सकते हैं ।